और लड़के ने ब्लैक कलर की शर्ट पेहनी हुई है।

और यहाँ पे लड़के हैं काफी सारे जो खेल रहे हैं।

इस फोटो में सड़क दिखाई दे रही है।

और यहां पर झंडा दिखाई दे रहा है एक पेड़ दिखाई दे रहा है बिल्डिंग दिख रही है सब प पिंक कलर की।

पंजाबी में लिखा हुआ है नंबर डले हुए हैं एक दो तीन--

इस फोटो में एक टंकी दिखाई दे रही है।

एक कॉरिड्रार दिखाई दे रहा है।

और फूलो की डकोरेशन दिख रही है आर्टिफि--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

इस फोटो में ए_सी लगा हुआ है ऊपर एक पंखा लगा है सामने दो लैंप भी लगे हुए हैं जोकि जच रहे हैं।

एक लाल रंग का है एक पीले रंग का है एक नीले रंग का है।

और यहां पे एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

दीवार पे वॉल पेपर लगा हुआ है हर एक रंग का--

सामने लिखा हुआ है माधवगढ़ नीचे दो हाथी लगा रखे हैं।

और एक लेडी भी दिखाई दे रही कैमरे वाला दिखाई दे रहा है पीछे आर्टिफिशियल फूलों की डेकोरेशन दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने एक गाड़ी है जिसपे लिखा है बेटी बचाओ गाड़ी का नंबर है एच_आर --

सामने लिखा हुआ है गोल्डन रेस्टोरेंट वेज एंड नॉन वेज प्रो--

वैधता लिखी हुई है थर्टी वन थ्री दो हजार बी--

इस फोटो में एक लड़की है जिसने लाल रंग का सूट पहना हुआ है पैरों में लाल रंग की नेल पेंट लगाई हुई है।